उलन में बहोत सारी झूला लगे हुए हैं और लाइटें भी बहोत सारी लगी हुई है।

स्टेज के पीछे भी रंग बिरंगे फ्लावर और झालर लटके हुए हैं।

एक ढाबे का दृश्य है ढाबे के आगे पोस्टर पर रिशु भोजनालय लिखा हुआ है।

वहां पर तीन व्यक्ति भी बैठे हुए हैं।

रोड पर एक आ बस चल रही हैं वह आसमानी कलर का--

दुकान के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी है।

यह एक दुकान का दृश्य है इस दुकान में रंग बिरंगे बलून सजे हुए हैं।

हाल की दीवार का कलर व्हाइट है और नीचे में सीमेंट का पलस्तरा किया हुआ है।

इस हाल की दीवार पर एक घड़ी लटकी हुई है।

एक व्यक्ति के हाथ प्लास्टिक का बाल्टी है।

महिला के हाथ में एक बड़ा सा फ्लावर पॉट भी है।

इस स्टेज पर एक महिला और एक पुरुष है दोनों के हाथ में एक एक माइक है।

यह एक रोड का दृश्य है रोड के किनारे बहोत सारा मोटरसाइकल खड़ा है।

उसका दोनों गेट खुला हुआ है इसका मरम्मत हो रहा है।

सीलिंग में बहुत सारे ट्यूबलाइट भी लगे हुए हैं।

उन्होंने सारे रेड कलर के वस्त्र पहन रखे हैं।

यहां एक शीशे का भी आलमीरा बना हुआ है।

कुछ बेड आसमानी कलर के हैं और कुछ ब्लैक कलर के हैं।